और गन्ने आ मोर का छाप भी बना हुआ है।

और यहाँ पे रेड कलर के --

और यह एक अ अ केक की कॉफ़ी भी है जहाँ पे चौमिन भी मिलता है और समोसा भी मिलता है और बहुत चीज मिलता हैं।

इसमें एक बोटल भी रखी हुई है।

इसमें बहुत सारी खिड़की भी है।

यह एक स्कूल है जहाँ पे डांस प्रोग्राम चल रहा है और इस स्कूल का नाम है लक्स इंटरनेशनल एकेडमी ।

तिरंगे की तरह बैलून लगे हुए है बल्ब भी है।

वहाँ पे बहुत दरवाजें खुले हुए है।

भरा-भरा लग रहा है अच्छा लग रहा है। यहाँ के पेटीएम --

अम बड़ा पेड़ भी है स्कूटर भी लगे हुए है बाइक्स भी लगे हुए है।

टल का नाम बलराम उस्तव पैलेस भी है |

और यहाँ पे एक टीचर है जो की सारे बच्चों की एक्टिविटी देख रही है।